साथ ही भगवान शिव शकंर तपस्या में लीन नजर आ रहै है और हमे सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

साथ ही हमे कुछ पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे है और हमे एक मिट्टी का टीला भी दिखाई दे रहा है यह दृश्या बहुत सूंदर लग रहा हैं।

हमे एक प्लेटफॉर्म का दृश्ये दिखाई दे रहा है साथ ही हमे कुछ गी गिट्टी भी नज़र आ रही है।

एक बड़ी ईमारत नज़र आ रही है ऐसा लगता है की यह एक बड़ी सिनेमा हॉल है साथ ही हमे दो झंडे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह इमारत किसी महाविद्यायल की लग रही है साथ ही हमे मैदान भी दिखाई दे रहा है।

हमे एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाई दे रहा है यह एक प्लात्फ्रोम है जहाँ पर एक नंबर का बोर्ड टेंगा हुआ हैं।

हरे - भरे वृक्ष दिखा रहै है।

एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाई दे रहा है ये दृश्य एक प्लेट फ्रॉम का है जहाँ पर हमें कुर्सियों पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए नज़र आ रहे है ।

और हमें पानी के सुन्दर - सुन्दर फब्बारे भी नजर आ रहै है।